तीन लाइट ब्लू और ग्रीन कलर की है।

की इस पिक्चर में हमें एक छोटी सी दु--

जो देखने में बहोत ही सुंदर लग--

जिसने मास्क लगा रखा है क्योंकि उसको शर्म आ रही है।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

जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह एक रेस्टोरेंट का फोटो है।

और एक स्विच भी देखने को मिल रहा है और मैं एक गुबाड़ा भी देख पा रही हूं।